इस तस्वीर में जवाहर नीरव नवोदय विद्यालय का बोर्ड नजर आ रहा है ।

इस तस्वीर मे सड़क नज़र आ रही है और कुछ दफ्तर नज़र आ रहे है और कुछ वियक्ति खड़े हुए नज़र आ रहे और लाइटे जलती हुई नज़र आ रही है।

-- और दो पहिया वाहन और एक तीन पहिया वाहन नजर आ रहा है और एक चार पहिया वाहन नजर--